फूल का गमला लगा हुआ है उसके बाद सीढ़ी लगा हुआ है एक लकड़ी का--

साबुन है क्रीम है उसके बाद मसाला है।

यहां बहोत सारी समाने हैं उसके बाद यहां बहोत सारे बोड़े है एक ठंडा होने वाला फ्रिज है।

यह दोनों साइड पेड़ लगे हुए हैं।

टाइल्स के टाइल्स के बाद एक साइकिल खड़ी है

मंदिर के बाहर दो पुजारी खड़े हैं।

इसके अंदर बहुत कुछ लगी हुई है।

एक लोग क्या बोलते हैं नीचे बैठे हुए हैं उसके आगे क्या गाड़ी लड़ी--